एक फैन भी है और एक अंकल ने अपना फेस कवर किया है।

दूर दूर में बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी है और एक ब्रिज भी बना हुआ है लकड़ी का।

सामने एक बिल्डिंग है व्हाइट कलर की उसके सामने खजूर का पेड़ भी है।

अंदर में बलूंस के साथ डेकोरेट किया गया है और बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं।

ये एक पोस्टर है और यहां पे बहोत सारे पेपर लगाए गए है।

ये एक म्यूजियम पार्क है और यहां पे एक शार्क है।

की केले की पाइनएप्पल की सेब की आलू भी है और फूलगोभी भी है।

एक ट्रक भी है और एक ब्लैक कलर की बाइक है उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है जिसने येलो कलर की ड्रेस पहनी हुई है।